यह कोई एक ऑफिस वगैरा की फोटो दिखा रखी है।

और उसके पीछे एक ओटो भी दिखा रखी है और इसके साइड में दो दुकाने में भी हैं जहां--

और इसमे दो बच्चे हैं ओ दिखा रखे हैं।

ये एक फोटो दिखा रखी है।

और इस बंगले के अंदर बहुत सारी गाड़ियां भी है कि शायद कोई स्कूल वगैरह है और इस साइड में --

और यहां पे रेड कलर के कुछ बैरियर्स वगैरह भी रखे हुए हैं।

ये एक फोटो दिखा रखी है।

और सामने इन्होंने एक तसला रखा हुआ है।

और ये कैटल फीड की कोई शॉप है जहां पे कुत्ते बिल्लियों का खाना मिलता है।

और यहां पे ये अलग-अलग प्राणियों के लिए अलग-अलग तरह के खाना रखा हुआ है।

ये कोई एक मंदिर जैसे कुछ फोटो दिखा रखी है और इसके ऊपर लिखा है गेट नंबर फोर ।

और भी बहोत सारा स्टेशनरी शामान है।

और इसी के नीचे एक अ सड़क के ऊपर बहोत सारी गाड़ियां दिखा रखी हैं एक व्हाइट कलर की वैन है बाइक है।

कुछ कर रहा है और इसके पास ही इन पूजा वाला सामान भी रखा हुआ है।

और इसके साथ एक चेयर भी हैं।

और इन बॉक्सेस पे इस पैकेजिंग वेगैरा अच्छे से कर रखी है।

ये एक कोई शॉप वगैरह की फोटो है।

और ये ग्रीन और ब्ल्यू कलर की टेबल बना रखी है।

ये एक फोटो दिखा रखी है।

और ऊपर फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल का साइन भी लगा हुआ है।

और यहां बाहर बहोत सारी बाइक्स खड़ी हुई है जिनमें से एक पे आर्मी लिखा है।

ये एक फोटो दिखा रखी है और ये किसी पूजा की फोटो है जहां पे हवन हो रहा हैं।

और उसके पीछे कुछ दो रूम्स जैसे और भी हैं।

और ये कोई वाल्मीकि चौक है झज्जर में उसकी फोटो दिखा रखी है और ये एक बड़ा सा गेट है।

और पीछे की साइड एक रूम है जहां--

सी ए टी लिखा हुआ है और इसके सामने बहोत सारी बाइक्स भी खड़ी हुईं हैं।

और इसके साइड में और भी फर्नीचर है साइकिल है।

ये किसी बैंक की फोटो दिखा रखी है।

और इसके ऊपर एक बैनर है वो लगा रखा है।

जिसपे लिखा हुआ है एच_डी_एफ_सी बैंक और इसके साइड में उसका सिंबल भी है।